ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये एक लोकल बस स्टैन्ड की है और जो आपको नजर आ रहा होगा दोनों तरफ बस के स्टैन्ड बने हुए हैं और सामने बहोत सारी --

पूल बना हुआ है। उसमे बहोत सारा लोग नहा रहे हैं और मजा आनंद उठा रहे हैं और पीछे की तरफ आपको कालोनी --

ग्रुप ऑफ कॉलेज और ये कॉलेज का एंट्रैंस गेट है और आपको गेट पे एक बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा और दो गार्ड हैं जो खड़े हुए हैं।

यह जो तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये एक पार्क की। ये पार्क की जो है इंटरेन्स है। जिसे एक येलो उससे सजाया गया है।

और पार्क के एन्ट्रेन्स में आपको बोहोत सारे छोटे लाल गमले नजर आ रहे होंगे। एक तो आपको बड़ी लगी और पोड़ पेड़ पौधे --

पॉपुलर करके कुछ लिखा हुआ है। दूसरी तरफ एक दरवाजा और --

वो ही जो आपको मैडम जो नजर आ रही होंगी क्लासरूम मे घूमते हुए और बच्चों ने कुछ बच्चों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।

थोड़ी मीड है और कुछ ले लेडीज है जो नीचे बैठी हुई है जिन्होंने मोस्टली सभी लेडीजो ने --

ये पूल है। पाणी से खचा-खच भरा हुआ है ओर बहुत ही अच्छा मोसम भी हो रखा है नहाने का ओर --

और यह बोहोत ही अच्छा पोज है अर्जुन का और जो ब धनुष और बाण के साथ यह बहोत ही अच्छी स्टैचू जो है बना रखी है और एक पैर के तले --

यह तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये एक पार्क की है ओर इसमे यहां कुछ नारियल के और भी कुछ डेकोरेटिव और अंदर पेड़ लगे हुए हैं।